यह एक बाजार है यहाँ बहुत भीड़ है यहाँ एक बस है यहाँ एक जीप है यहाँ एक-- इस जीप मे क्या-क्या है वो हम बताएंगे--

यह एक दुकान है उसके डब्बे चिंगम का है एक और शेम्पू है और एक बिलम और एक बिमल की पुड़िया है और --

घर पेड़ है और ऐ न सूजी है और ये--